यहा मुझे एक दुकान दिखाई दे रही है उसपे लिखा हुआ है स्वाद गोल्ड चाय और आनंद स्टोर उसके बाद बहुत सारा सामान रखा रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस इमेज मे मुझे एक तालाब दिखाई दे रहा है उसमे हम्म फ़ुब्बारे लगे हुए दिखाई दे फवारा चलते हुए दिखाई दे रहे है और पेड़ दिखाई दे रहे है सामने एक घरसा दिखाई दे रहा है।

इस इमेज मे मुझे एक होटल पैलेस दिखाई दे रही है।

बहुत सारे बच्चे है। लडके और लड़ते दिखाई दे रहे है। आतेजाते --